यह एक गांव का फोटो दिखाया गया है।

पेड़-पौधे लगे हुए रहते हैं और --

और हुंडाई कंपनी बोहोत ही बढ़िया कंपनी है। हुंडाई कंपनी --

जाते है किताब कॉपी खरीदने के लिए बहुत सारे दुकानदार भी जाते है यहाँ पे किताब कॉपी लेने के लिए ताकि वो अपनी दुकान में लेके बेच सके और इस होलसेल का नाम श्री राजेश्वरी बुक लिंक हे ।

पेड़-पौधे लगे हुए हैं और गांव के बगल में पहाड़ भी है जो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और गांव के लोग किसान लोग खेती करते हैं बहुत ज्यादा मेहनत से --